यह दृश्य किसी हॉस्पिटल का प्रतीत होता है जैसा कि हम देख सकते हैं नीचे--

दुकान दे रखी है ऋषि मेडिकल्स करके और कुछ के सामने गाड़ियां बाइक वगैरह खड़ी हुई हैं।

यह दृश्य डाकिया घर के अंदर की दिखाई दे रही है तीन सेक्शन दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि --

अलग-अलग कर्मचारी बैठे हुए हैं और बहुत बड़ा ऑफिस मालूम होता है यहां लोग अपना डाक --

सामने बहुत ही सुंदर तरीके से सनसेट का नजारा देखने को मिलता है और साइड में हम देख सकते हैं बड़े-बड़े पेड़ लगाए गए हैं।

कॉफी शॉप के अंदर का दिखाई देता है जहां हम देख सकते हैं कॉफी की मशीन पड़ी हुई है और कुछ --

इसमें से एक चाणक्य आयस अकेडमी भी है वह दिन का समय प्रतीत होता है और यह दृश्य काफी दूर से लिया गया है।